और यहां पे ऊपर से रोशनी आते हुए बोर्ड पर दिखाई दे रहा है और दीवार के बगल में एक गेट भी है।

और यहां पे एक व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहा है जिसका ऊपर मास्क पहने हुए ऊपर जो आसमानी कलर का है।

और उसका कलर व्हाइट है उस पे भी लाइट का रौशनी आते हुए गेट पे चमक रहा है।

और यहां पे बहुत सारे व्यक्ति खाना भी खाते हुए नजर आ रही है।

यह एक महिंद्रा आर्केट के दृश्य है तथा यहां पे ऊपर में बहोत सारे बाइक दिखाई दे रहे अंदर में।